अनेक प्रकार के पौधे दिख रहे हैं।

सोनपुर मेला है जो की दो हजार उन्नीस में लगा था।

वेस्टर्न साइड में जा सकते हैं।